आटो आता दिख रहा हैं हम्म जमीन दिख रही हैं ड्रामर वाली और तार दिख रही हैं पास में एक और ऑटो दिख रहा हैं।

और दो कुर्सियाँ दिख रही है टेबल दिख रहा है बैलून दिख रहा है दिख रहा है पर टाइल्स लगा

डलिया दिख रही है डलिया में मिर्ची दिख रही है और एक मिर्ची कुछ गली हुई है आदमी के हाथ दिख रहा मिर्ची तोड़ रहा पास में पन्नी है पन्ने में भी मिर्ची रखी हुई है।

ये बगीचा है पेड़ दिख रहे है पानी दिख रहा है आसमान दिख रहा है बीच में पानी है गाय मकान दिख रहे हैं दूर-दूर काली-काली घाटी भी दिख रही --